लाइब्रेरी का कलर लाल और सफेद है।

बगल में बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे है।

यह एक पेट्रोल पंप है।

सामने कुछ घर दिखाई दे रहे है।

होर्डिंग में दो ट्रैक्टर की चाप की है पीछे कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

सामने एक बड़ा सा घर दिखाई दे रहा है।

घर में पांच दरवाजे लगे हुए हैं।

और कुछ पौधे लगाए गए हैं।

यह एक सलून की तस्वीर है।

सामने अलमारी में कुछ क्रीम और मेक अप की सामान रखी हुई है।

नीचे फर्श पर कारपेट बिछी हुई है।

दुकान के अंदर एक बच्चा और एक आदमी खड़ा है।

एक दुकान के अंदर एक आदमी खड़ा है।

घर के अंदर कुछ लाइट दिखाई दे रही है।

रोड के किनारे ऐ_सी की कूलिंग फैन लगी हुई हैं।

क्या डिजाइनदार रेलिंग बना हुआ है।

दुकान की टेबल पर एक क्यू_आर स्कैनर रखा हुआ है।

के बगल में कुछ लकड़ी की अलमारियां बनी हुई है।

यह एक किताब की दुकान है।

दुकान के बाहर कुछ गाड़ियां खड़ी हैं।

दुकान के अन्दर एक आदमी बैठे हुए दिखाई दे रहा हैं।

माल के ऊपर दो लड़कियों की होर्डिंग लगी हुई है।

जिनमें से कुछ बच्चे आगे चल रहे है।

हॉस्पिटल के बगल में कुछ घर दिखाई दे रहे है।

हॉस्पिटल के आगे बहुत सारी बाइक और एक कार खड़ी है।

मंदिर के ऊपर एक लाइट लगा हुआ है।

यह एक मछली की तस्वीर है।

घर के अंदर एक पंखा दिखाई दे रहा है।

एक कमरे के अंदर बहुत सारी सामान रखी हुई दिखाई दे रही है।

और एक लकड़ी की टेबल रखी हुई है।

एक गेट के सामने एक गाय और एक कुत्ता है।

यह एक स्कूल की तस्वीर है।

छे तरफ एक शीशे का दरवाजा है।

एक रूम के बाहर किसी चीज का नेम प्लेट लगा हुआ है।

बहुत सारी बाइक खड़ी है।

सामने कुछ घर दिखाई दे रहे हैं।

जिनमें से एक बैंक है जिसका नाम बंधन बैंक है।

हमने एक घर की चित्र दिखाई दे रही है।

सामने का घर पूरी तरह से बन कर तैयार नहीं हुआ है।

घर के बगल में कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

ऊपर दीवाल पर बहुत सारी एल_ई_डी बल्ब लगी हुई है।

जिनके आगे बहुत सारे पेड़े रखें हुए हैं और सामने एक तराजू है।

गेट में कुछ सीधी सीधी एंगल की पट्टियां लगी हुई है।

दीवाल से सटाकर दो पानी की केन रखी हुई है।